ये जो गार्डन का ही द्रश्य है बोहोत ही प्यारा द्रश्य है सुंदर लग रा है अति मनोहर --

ये जो दृश्य है खेल पार्क का है बड़ा ही प्यारा दृश्य है। बच्चो के खेलने के लिए यहाँ प्रकार की सुविधा है।

और ये है एक रेस्टोरंट है ऐ खाना जितना कहे जितना --

उतना लो थाली मैं व्यर्थ न जाये नाली में केवल जितना आप खाते हैं उतना आप वेस्ट करते हैं ब्वाहोत नुकसान है ये खाने का। कई लोगों को खाना नसीब नही होता कई लोग खाना फेंकते रहते हैं तो ऐसा कभी मत करना |

और ये मच्छी मार्केट । मछली पकड़ते हुए लोग और उनके व्यापार करेंगे। --